ये मेरेको लग रहा है ये सब पाइप है वेल्डिंग करने वला ये ट्रक में लदी हुई है दो आदमी है।

यहां पे गाड़ी सब लगी हुई है एक आदमी ताक रहे हैं इसे देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया है।

आर वन फाइव ये मतलब मेरे को बड़ा मॉल लग रहा है कितनी अच्छी टाइस है।